और जिम मे बडे बडे कांचो कि खिडकी भी बनी है।

बड़ासा अ पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ के बीच से ये सड़क जा रही है।

यहाँ अ जिमका बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

जिम दिखाई दे रही है जिम के अंदर एक्सर्साइज़ करने के बहुत सारे अलग-अलग तरह के--

उन मूर्तियों के पीछे लोहे की कुछ रेईंग बनी है उस रेईंग पे एक एक झंडा अह लटक रहा है उनसे थोड़ीसी पीछे पर एक बड़ासा पहार बना है।

ये खाली स्कूल की क्लास दिखाई दे रही है क्लास मे ये लाइन्स से बेंचे बिछी हुई है।

मैदान के चारो तरफ बड़े बड़े हरे भरे से पेड़ पौंधे लगे हुए है और मैदान के एक हिस्से में बडा सा खंबा गडा है।

बाउंड्री ई के पास कुछ बड़े पेड़ अह लगे हुए है उन बाउंड्रीओं के एक तरफ दो लड़के खड़े हुए है।